इस फोटो में किसी होटल का फोटो दिखाई दे रहा है इसमें काफी सारे टेबल वगैरा और लाइटिंग वगैरा है और फ्रेश भी अच्छा और शानदार लगाए गए हैं

इस फोटो में काफी सारे बैलून वगैरा दिखाई दे रहे हैं जो की अलग अलग कलर व अलग अलग डिजाइन में दिखने में काफी अच्छा और शानदार दिखाई दे रहे हैं।

और आगे ऑफिस भी है जिसके अंदर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है कुछ बाहर टेबल वगैरा स्टूल भी बैठने के लिए लगाई गई है लाइटिंग वगैरा है पंखा --

इस फोटो में कुछ नागरिक कैंसर हॉस्पिटल या रिसर्च इंजीनियर इंस्टिट्यूट दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति है जिसके हाथ में मोबाइल है और एक वो लड़का है जो कि रस्सी खींच कर उधर खड़ा है पीछे भी काफी बड़ी भीड़ है दिखाई दे रही है कम से कम --

तीन से चार मंजिल की होगी और पीछे की ओर काफी हरियाली है।

इस फोटो में काफी सुंदर एक घर डाउनलोड दिख रहा है जिस जो की एक श्री जैन पब्लिक स्कूल है यानी कि एस_जे_पी --

और अक्छरे आगे पिलर भी कंटीन्यूअस कांटिनेंटल लगाए गए है ऊपर एक टेंट वगैरा भी लगाया है जोकि धुप से बचने के लिए है।

और एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है जो की कोने में अल अलग जग--

इस फोटो में एक दो से चार बाइक वगैरा साइकिल वगैरा दिखाई दे रही है लक्ष्मी लाइब्रेरी करके नाम दिखाई दे रहा है।

और दो चार प्लेटें और भी दिखाई दे रही हैं जो कि खाली हैं सामने थम्सअप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में काफी सारी अलग अलग प्रकार की दो तीन गाड़ियां दिखाई दे रही है एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई देता हुआ जा रहा है।

नीचे मार्बल वगैरा भी जो फरश है जो आंगन है वो भी बहोत ही प्यारा सुंदर बनाया गया है आस पास शीशे वगैरा लगाकर --